ये माउन्ट जी स्कूल है। बाहर का गेट का पोर्शन दिखा रखा है। इसमें तीन पार्ट में गेट खुलता है। बगल में सिक्युरिटी गार्ड है। बगल --

ये देखिये ये आपका एक शो शो रूम है।

यह देखिए शादी में आये हुए है और यहाँ पे सेल्फी स्टॉप पॉइंट बनाया जाता है। वहाँ पे ये लोग --

दोनों बैठे हुए है और पीछे देखिए गणेश भगवान की मूर्ति लगी हुई है और फूलों को इतना बढ़िया सुंदर कर रखा है। हरा पीला पिंक के कर रखा है।